यह एक रोड है रोड में एक ऑटो लगा हुआ है।

यहां पे एक गाड़ी गाड़ी लगाया हुआ है।

एक्सिस बैंक के ऊपर मणप्पुरम गोल्ड लोन लिखा हुआ है पोस्टर मे।

यहां पे लोग चटाई बिछा के खड़े हैं।

इसके बगल में कपड़ा टांगा हुआ है।

यह एक दवाई दुकान है।

रूम का कलर ग्रीन ऑरेंज येलो है।

रोड पे एक ऑटो खड़ा है।

इसमें एक मशीन रखा गया जिस पे दूध बन रहा है।